यहां पे एक रूम में एक टेबल लंबी से यहां से और कुछ किताब रखी है ब्लैक कलर का बैग है।

ये एक रोड है रोड पर दो आदमी स्कूटी से जा रहे हैं और एक आदमी खड़ा हुआ है।

और नीचे टाइल्स मार्बल लगे हुए हैं आसपास दिवाले है वन मंजलि इमारत--

एक घर है फार्म हाउस में घर बना हुआ है व्हाइट से पुता हुआ सामने चार पिलर चमक रहे हैं।

और बगल में हरी हरी भ हरी साइ की दुकान हरि भाई की दुकान है चश्मे वाले।

कुर्सी भी हैं जो लकड़ी की हैं और ये भी मेज भी लड़कियों की हैं।

इसमें सिलेंडर की विक्रेता होती है और यह वाइट बिल्डिंग है व्हाइट से पोता हुआ है।

फायर पुलिस फायर एक सौ एक पुलिस --

एक आदमी खड़ा हुआ है बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं।

यहां पे दो दुकानदार है और एक कस्टमर तीन है।

और पंखे भी लगे हुए एक छत वाला और एक साइड वो भी व्हाइट कलर के हैं।

ये एक मिस्त्री है जो हाथ में फीता लिया हुआ है और सामने एक बिल्डिंग है।

बगल में एक फाटक लगा हुआ है ब्लैक कलर का।

टंकी है। टंकी भी रखी है। टंकी पाइप और भी सीमेंट वगैरा पुट्टी वाला सामान --

यह एक पोस्टर लगा हुआ है रोड है ऑटो जा रहा है।

इसपे लिखा है सबसे बड़ा कंप्यूटर शोरूम बेस्ट डील कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर